बोरा में ले जा रहा है हमारा सब एक लोग बोरा में लेके जा रहा है दो लोग पकड़े हुए हैं पास में।

पार्ट्स में भी सबकुछ दिया हुआ है फर्श भी।

यहाँ पे एक सड़क है और ए.टी.एम. के अंदर एक बल्ब जल रहा है सफेद कलर का --

पूरा एकदम पूरा पेड़ में फूल है हरा-हरा पत्ता है यहाँ पर एक बाइक भी है।

दीवार भी है जो भी रॉड का है ब्लैक कलर का है और इधर एक बिल्डिंग में चार गो गेट भी दिख रहा है।

यहाँ पर तार भी हैं। यहाँ पर बिजली जाता है और इधर पास में बोर्ड भी रखा हुआ है।

यहाँ पर दो गो मूर्ति है जिसे एक महिला प्रणाम कर रहा है जो रेड कलर पहना हुआ है और यहाँ पर एक मूर्ति --

यहां पर बिल्डिंगे है ऊपर में आसमान पूरा नीला साफ़ है और पास में ग्राउंड के जैसा भी है भी लेकिन प्लास्टर नहीं किया हुआ है।

चारो तरफ माल रखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारा बोरी भी है पास में पेड़ भी है हरा कलर का एकदम --